मैं किसी किराना दुकान का फोटो है जहां पर बहुत सारे खाने पीने के समान नजर आ रहे हैं और इस दुकान में स्कैनर भी दिखाई दे रहा है।

जिस दुकान में ब्लू कलर का शटर वाला गेट है। दुकान के अंदर में थोड़ा अंधेरा दिख रहा--

एक बैंक कोटक कंपनी का है और एक बैंक का पोस्टर दिखा रहा है।

इस फोटो में एक रूम बहुत सारे सोफे और टेबुल रखे हुए दिखाई दे रहे है।

और एक खिड़की भी है जिस पर पर्दा लगाया गया है।

और इस रूम में बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे कुछ तार खींचा हुआ है।

सामने जलने पे कुछ सामान रखे हुए हैं।

फोटो में एक बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्सिया रखी हुई है और उसे एक कपड़े से ढक दिया गया है जोकि ब्लू और सफेद रंग का है ।

एवं बहुत सारे खिड़कियां भी लगी हुई है।

यह किसी जिम का फोटो है जहां पर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

सामने वाला व्यक्ति फोन चलाते हुए नजर आ रहा है। और यह होटल का रंग ब्लू रंग का है। और सफेद रंग से भी पेंट किया गया--

सामने एक छोटा सा पेड़ भी लगा हुआ है पीछे हरे रंग का चार्ट भी बिछाया गया है।

और हरे भरे घास भी दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और इन मजदूरों ने सफेद और ब्लू रंग की टोपी भी पहन रखी है।

में एक बड़े से नाव के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी के हाथ में बांस भी नजर आ रहा है जिससे पानी को काटते हैं।

यह किसी बैंक का फोटो दिखाया गया है जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में एक बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जिसे पीले रंग से पेंट किया गया है।

इस रूम में फ्रिज भी दिखाई दे रहा है और फूल का एक छोटा सा गुच्छा भी नजर आ रहा है।

इस रूम मे पर्दा भी लगा हुआ है। और गेट भी लगे हुए है।

और इस फोटो में एक पोस्टर भी दिखाया गया हैं जिस पर बहुत बड़े अक्षरों से वेलकम लिखा हुआ हैं।

इनके पीछे एक टेंपू है जिसके पास भी कुछ व्यक्ति खड़े हैं और इस फोटो में कुछ ट्रक भी दिखाया गया है।

पर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जो की नहाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं।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

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक सी_सी_टी_वी केमेरा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में कुछ लोहे और स्टील के सामान नजर आ रहे हैं जो कि सफेद रंग का है।